यहां पर एक होटल है। बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे होटल राधिका लिखा है।

टोपी लगा रखी है यहां पे दो आदमी खड़े हैं यहां पे एक आदमी पीले रंग की शर्ट ख पहने बैठा हुआ है।

मछलियों के ऊपर काले रंग से निशान पड़े हुए हैं।

यहां पर सफेद रंग की एंबुलेंस है इसपे परफेक्ट लिखा है।

पास में एक गुलाबी रंग की बिल्डिंग है जिसमें हरे रंग का पर्दा लगा हुआ है।

यहां पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे एन_आर_एम लिखा हुआ --

यहां पे एक मंदिर है इसमें दो मूर्ति है जिस पे पीले रंग का माला लगा हुआ है।

यहां पर गेंदे के फूल पीले और हल्के गुलाबी रंग के भी दिखाई दे रहे हैं।

आस पास जंगल है कुछ खेत भी दिखाई दे रहे हैं।